इस फोटो में मुझे कुछ दुकानों की शटर दिखाई--

इस फोटो में मुझे सुपर मार्केट का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक फोटो में मुझे तीन पुरुष दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे बंधन बैंक का बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक मकान दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे सोनार की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे चाय की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे रोड दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे जिम का बहुत सारी मशीने दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ प्लास्टिक के बर्तन दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे तीन पुरुष दिखाई--

इस फोटो में मुझे एक टेबल कुर्सी दिखाई दे--